इस चित्र में एक ऑफिस दिख रहा है।

इस चित्रा में एक अलमारी दिख रही है जहां पर बहुत सी बोटलेज रखी हुई है।

जू में एक हरा भरा पेड़ नजर आ रहा--

बाजू की दीवार में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगा हुआ--